ये बैंक है बैंक के बाहर ए.टी.एम. रखा हुआ है इसमें ए.टी.एम. पैसे निकालने वाला है बाहर गेटे कांच की गेट लगे हुए है।

मेला मेदान है जंहा पर सारे बच्चे झुले मे झुल रहे है मिक्की माउस भी है यहाँ पे लाइट भी बहुत सारी सूंदर लगी हुई है।

सभी मेले में एन्जॉय कर रहे है यंहा मेले में बहुत सारी शॉप वगैरा नजर आ रही है यंहा झूले में बच्चे बैठे हुए है मिक्की माउस में एन्जॉय ले रहे है सभी मेले में घूम रहे है।

ये पार्लर का इमेज है यहाँ पर चेयर बागेरा लगे हुए है गुब्बारे लगे हुए है रूम को अच्छी तरह से--

गार्डन हैगार्डन यहा गार्डन मे बच्चों के खेलने का हैयहा सभी बच्चे खेल रहे है रेल गाड़ी जेसा कुछ है ।

एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां पर बहुत बड़ा मैदान है ऊपर बादल है वाइट कलर के मौसम नज़र आ रहा है।